बड़ा सा गाड़ी लगाया गया है।

कुर्सी बैठ कर मोबाइल से--

ए ठो एक नदी हैं और ये नदी काफ़ी बड़ा हैं और यहाँ एक पूल बनाया गया है।

और कोचिंग सेंटर के बाहर एक छोटा-सा मंदिर बनाया गया है और ये कोचिंग सेंटर बहोत ही बड़ा है।

एक ठो एक देवता है और इसको पूजा किया गया है।